इसमें एक और से दूसरी और से जाने के लिए एक पुल बना नजर आ रहा है यह समय दिन का है।

चित्र के बाईं ओर भोले शंकर की मूर्ति रखी हुई हैं।

इस चित्र में खुला मैदान नजर आ रहा है मैदान में छोटी गिट्टियां बिछी हुई हैं।

ब्रिज दायी ओर स्तिथ है ब्रिज के दायी ओर हलकी रौशनी में एक विशाल पर्वत भी देखा जा सकता है।

ईमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में कॉंच की खिडकियाॅं बनी हुई है।

उद्यान मैं रास्ते बने हुए हैं उद्यान के पीछे धुंध में पहाड़ियां देखी जा सकती हैं।

ईमारत को एक दिवार से घेरा गया है सड़क के ऊपर कुछ बिजली के तार देखे जा सकते हैं।